पीछे वाल लाल कलर के क्ले टाइप में गुंबद बनी हुई है।

और एक ए_सी भी ऊपर की ओर लगी हुई नजर आ रही है।

और सी_सी_टी_वी कैमरा भी सामने की ओर लगा है।

इसके अंदर नीला नीला कागज लगा हुआ दिख रहा है।

अब बहुत सारा फर्नीचर भी बना हुआ है नीले कलर का।